यह इमेज एक जिम की इमेज है जिसे मुझे जिम वर्कआउट समान नजर आ रहा है।

ये इमेज एक बर्तन के दुकान की इमेज है जहां पर मुझे कुछ छड़ी नजर आ रही है।

यह इमेज देखने में खूबसूरत और अमेजिंग लग रही है। सामने मुझे ओरियन हेयर ऑयल दिख रहा है।

मुझे कुछ हरियाली दिख रही है कुछ पेड़ दिख रहे हैं ये देखने में खूबसूरत लग रहा है फिर ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर किसी गाँव की जगह है।

ये इमेज एक घर की इमेज है जहां पर मुझे कुछ घर नजर आ रहे ये देखने में खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा है।

जहां पर लैट्रिंग बाथरुम का मुझे सामान दिख रहा--

ये ईमेज एक इंडिया गेट की इमेज है जहां पर मुझे किराना दुकान और एक व्यक्ति दिख रहा है यह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

ये इमेज एक होटल की इमेज है जहां इस होटल का नाम है होटल शिवाय।

एक किराना दुकान की इमेज है जहां पर मुझे किराना का कुछ सामान नजर आ रहा है।

ये इमेज एक दीवाली की इमेज है जहां पर बम पटाखे फोड़े जा रहे है।

ये इमेज एक शादी पार्टी की इमेज जहां पर मुझे कुछ पेड़ नजर आ रही है।

ये नज़र एक पेट्रोल पंप की नज़र है जहां पर मुझे बहोत सारी एक ही एक ही रंग की नजर कार आ रही है।

ये नजारा देखने में खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा हैं।

ये देखने में खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा है।